यह एक रोड का दृश्य है जहाँ पर रोड दिखाई दे रही है सामने काई सारे मोटर साइकल्स स्कूटर और साईकल्स दिखाई दे रही है लोग दिखाई दे रहे पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रही जो कि पीले कलर की है जिसपे बोर्ड लगे हुए है पीछे बिजली के तार जा रहे है।

दुकान दिखाई दे रही है दुकानो के उपर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की सफेद रंग की जिस पे खिडकीया दिखाई दे रही है वो गुलाबी रंग की है उपर बोर्ड लगे हुए जो की इस का काले रंग का है गुलाबी रंग के है नारंगी के बोर्ड है जिसपर आकृती बनी हुई --

नीचे पीले रंग की पट्टी जा रही है सामने तक देखने पर बहुत सारा पर्दा दिखाई दे रहा है एक बोर्ड और लग रहा है दिन का समय है ऊपर टीशर्ट भी दिखाई दे रहा है।

उसके बराबर एक महिला चल रही है जिसने मास्क लगाया हुआ है पीछे और भी लोग दिखाई दे रहे है पीछे घर दिखाई दे रहा है जिसके भुरे रंग का गेट दिखाई दे रहा है जिस पर आकृतीया बनी हुई है।

अंदर की तरफ़ लाइटे दिखाई दे रही है काउंटर दिखाई दे रहा है काउंटर पर की सारे रॅक लगे हुए है जिस पर बहुत सारा समान रखा हुआ है आगे की तरफ़ कुछ कपड़े लटके हुए दिखाई दे रहे है और एक की तरफ़ देखने पर कुछ टाइल्स लग रही है जिसपे कुछ लिखा हुआ--